यह एक यह एक बस स्टैंड है जो हाईवे की तरफ में अम बगल से जाती हुई अम जा रहा है जो सफ़ेद कलर की ऐसी बस खड़ी हुई है जहाँ दो-तीन लोग खड़े हुए हैं। बस का वेट कर रहे हैं।